ऊपर में एक लोहे का छत है आजू बाजू उसके डंडे लगे हे।

उसके पास में एक खिड़की है ट्रक को ट्रक को सुधराने के लिए लाए हैं।

के बाजू से एक सीढ़ी आई है सीढ़ी के पास में कुर्सियां रखी है।

वह से एक सीधी रोड गयी हैं रोड के पास में भी गाड़ियां खड़ी हैं।

यहाँ पर शादी का लॉन्ज हे लॉन्ज का कलर मारून कलर का है उसका।

ये बहुत अच्छी जगह है खास करके गरीबों के लिए तो बहुत अच्छी जगह है।

यहाँ एक रूम है रूम अंदर मे स्टील का सामान रखा हुआ हे जैसे डब्बे।

सामने के दीवाल पे टीवी रखी हुई हे साइड में भी टेबल पंखे रखे हुए हैं।

छत के ऊपर में एक सौर्य ऊर्जा रखी हुई है जो धूप की वजह से ताप्ती है। उससे --

ऊपर में टायर रखे हैं नीचे में--

वो खिड़की के नीचे दीवाल है दीवाल का रंग लाल कलर का है उसके अंदर मे टेबल रखे हुए हैं।